जो बहोत ही खूबसूरत लग रहा है और जो पेड़ है वो भी खूबसूरत है एक भैया ने हाथ मे फोन पकड़ा है फोटो लेने के --

बोहोत से पानी में बनाया गया है शायद नही पानी में कैसे बना सकते है लेकिन पानी है जरूर इसके पास वह तो दिखाई ही दे रहा है।